वो भी ब्लैक एंड येलो कलर का है पीछे दीवार का कलर सीमेंटेड कलर में है।

ये जैकेट जो होती हैं वो डूबने से बचने के लिए होती है और --

एंड जो सीलिंग है वो वाइट कलर में वाइट कलर का ए.सी. लगा है यहाँ पर पुरा मिरर लगा हुआ है।

ये लोग बुक में से कुछ पढ़ रहे है ऊपर जो है वो जीसस क्रस के फोटो लगी हुई है यहां पे काफी औरत और आदमी लोग जमा हुए --

ये एक नदी दिखाई दे रही है और ऊपर पूल है जो दोनों हीं ब्लैक कलर में दिखाई दे रहें हैं।

पत्ते दिखाई दे रहे हैं और उसके उधर बड़े-बड़े पेड़ नज़र आ रहे हैं। आसमान का कलर ब्लू हो रहा --

ये है फाउंटेन फव्वारा चल रहा है लाइट्स काफ़ी मल्टी कलर में जल रही है।

बुल्डोजर से कुछ खिंच रहे है यहाँ पे दो चिमनियां लगी हुई है जिससे धुआँ ऊपर फेकता है आसमान नीले कलर का दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक जो मिक्स करते है मशीन वो लगी हुई है व्हाइट और ग्रीन कलर में फ्रंट में यहाँ पे मैदान पड़ा हुआ है नी --